यहां पे मुझे एक गेट दिखाई दे रही है और बहोत सारी और भी चीजे दिखाई दे रही है।

बहोत ही लाजवाब दृश्य है क्या दृश्य है बहोत ही अच्छी तस्वीर है ऐसी तस्वीर तो मुझे बहोत ही वर्षों बाद दिखाई दे रही है।

इसे बहुत शानदार चित्र में मुझे यहां पर कूलर दिखाई दे रहा।

यहां पर एक फ्रिज दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे एक सब्जी गोभी दिखाई दे रही है और टमाटर भी दिखाई दे रहे हैं।

इस दुकान में मुझे एक मेडिकल स्टोर दिखाई दे रहा है और अंदर की तरफ एक पानी का केन भी रखा हुआ है और यहां पे और भी बहुत सारी चीजें हैं।

और यहां पे दो तीन गाड़ियां भी दिखाई दे रही है और मुझे दो तीन मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रही है।

और यहां पे बहोत सारी देखना चाहिए तो दिख रही है।

यहां पे मुझे बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही है ऐसी तस्वीर मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी है।

और इस दृश्य बनाने वाले का हाथ काट देना चाहिए और बहोत ही सुंदर दृ --

बहुत ही लाजवाब चित्र मैने तो यहां से ऐसे पेड़ पौधे और ऐसे ऊंट कभी नहीं देखे हैं बहोत ही शानदार तस्वीर है।

और बहुत ही मतलब मुझे तो मुंह से कहना ही नहीं पड़ेगा इतनी अच्छी तस्वीरे खींच रहे हैं।

बहुत ही अच्छा नजारा दिख रहा है बहुत ही शानदार दृश्य है ऐसा दृश्य मैंने तो पहले कभी नहीं दे --